यह रखा हुआ है इस बेंच पे कुछ किताबें दिख रही हैं यहाँ पे वाइट बोर्ड भी है।

यहाँ पे एक कोलेज है जो हरे और गुलाबी रंग का पुता हुआ है।

यहाँ पे एक कमरा है इसके अन्दर एक बेड पड़ी है जिसपे सफ़ेद रंग का बिस्तर बिछा हुआ है।

यहाँ पे एक बहोत बड़ा मंदिर है जो फूलों से सजा हुआ है यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी हुई है ।

मैदान के बीचो-बीच में एक खंबा है ।

यहाँ पे एक नदी है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

जहाँ पे एक गेस्ट हाउस है।

जो सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है।